पहाड़ पर बोहत सारे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे पत्थर दिखाई दे रहे है।

इस इमेज में मुझे एक हॉल दिखाई दे रहा है। हॉल में बोहत सारी रेड कलर की कुर्सियाँ लगी हुई दिखाई दे रही है। और--

इस इमेज में मुझे एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा हैं बोहत सारी लाइटिंग लगी हुई दिखाई दे रही हैं मोटरसाइकिल दिखाई दे रही हैं उसपे एक आदमी बैठा हुआ है एक कार दिखाई दे रही है और दो आदमी और खड़े हुए दिखाई दे रहे है ।